यह एक बेकरी का तस्वीर है और इस तस्वीर पर एक टेबल दो चेयर और एक केचप भी दिख रहा है।

हमें इस बिल्डिंग पर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

बाद में यहां पर दो ए_सी है यहां पर हमे एक लाइट भी दिखाई दे रहा है और इस आस पास के बिल्डिंग सामने एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

और यहां पर एक खिड़की भी है और जिसका पर्दा ग्रीन हैं और ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा जो है वह है ब्लू कलर का।

और उन सेल्फ पर ढेर सारे किताबो है।

दिवार दरवाजा भी उनका टोकता से बनाया गया है यहां पे टेबल और जेड है सारे है और दरवाजे से दिखाई दे रहे हैं की वहां पर एक ब्लू कलर का एक दुकान भी है।

और उसके जमीन पर है आधा पर ब्राउन आधा पर ग्रे और यहां पर ढेर सारा आदमी है और वो आदमीया ढेर सारी मूर्तियों को देख रहे हैं।

पीला सा आसमान है और पीछे पर ढेर सारा घास फूस और पेड़ है और यहां पर ढेर सारा आदमी है और यहां पर ढेर सारे व्हीकल्स लोग भी --

हमें यहां पर कैथोलिक चर्च के आगे के प्रोफेट दिखाए गए हैं जहां पर तीन जीसस के पोस्टर्स लगे हुए हे।

हमें इस तस्वीर पर कार मैन्युफैक्चरिंग सेंटर दिखाया गया है जोकि वाइट कलर का है और उन पर लगे हुए हैं ब्लू कलर के।

नए सपोर्टिंग जो रोड्स ओ उन रोड लगे हुए हैं सफेद लाइट और यहां पर ढेर सारी कार है जिसे ठीक किया जा रहा है।

और ढेर सारी बिल्डिंग पर ढेर सारे खिड़कियां भी है उसके बाद में यहां पर रेमंड की दुकानें हैं।

हमें यहां पर एक फूड ट्रक की पिक्चर दिखाई गई है जिसके पीछे एक दो तीन कार है अलग अलग कलर की कार ।

के पीछे में ढेर सारा बिल्डिंगस है और इस बिल्डिंग्स के ऊपर थोड़ी सी हमें हरी हरी घास दिखाई दे रहा है और--

उस पोस्टर में लिखा है द दिसंबर से उसके बाद में वहां पर खाने पीने की चीजें की तस्वी--

हमें इस तस्वीर पर एक योगा करने वाले रूम दिखाया गया है जहां पर ढेर सारा आदमी आसनास किए हुए दिखाई दे रहा है।

हमें इस तस्वीर पर दिखाया गया है एक टेबल जो कि थोड़ा ब्लू कलर में है उसका ऊपर एक प्रिंटर मशीन है उसका साइड में है एक कंप्यूटर --

यहां पर हमें डॉक्टर्स दिखाया गया है जिन्होंने नीला कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

हमें यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जैसा दिखाया गया है जिसका ये आगे का एंट्रेंस दो गेट है एक गेट बंद किया गया है और एक गेट खुला--

हमें यहां पर डॉक्टर का रुम दिखाया गया है यहां पर एक अलमारी है उसके ऊपर सूटकेस है।

और एक पोस्टर चिपकाया हैं उसके बाद में यहां पे एक टेबल हैं तीन चेयर --

हमे यहाँ हॉल डाइनिंग रूम का तस्वीर दिखाया गया है। यहां पर स्विच बॉक्स है। यहां पर एक खिड़की और दरवाजा है।

यहां पर मौजूद दो रैंक है और खिड़की के ठीक नीचे चेयर है।

ये इस तस्वीर पर दिखाया गया है बड़ा सा दिन और उसे दिन के नीचे में है पानी।

इसके फ्लोर है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का उसके बाद में उसके दीवार जो है ओ जो ग्रे कलर का है और आधा सफेद कलर का है।

लाल दुकान का नाम है सोनेस और एक कोटक का है और उनके ऊपर सी_सी_टी_वी कैमरास भी है।

ये पीला कलर का शर्ट पहन के है और यहां पर ताला लगाया हुआ है और--

और पीछे पर हमे दिखाई दे रहा है ढेर सारा जंगल और एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

यह एक मेडिसिनल प्लांट का बुक स्टोर दिखाया गया है यहां पर ढेर सारे शेल्फ है।

और उस ढेर सारी शेल्फ पर ढेर सारी किताबें हैं और यहां पर हमें चार आदमी दिखाई दे रहा--

और यहां पर लाइट्स भी जले हुएं हैं।

और यहां पर हमें पीला पीला आसमान में दिखाई दे रहा है और ब्राउन कलर का जमीन भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर लाइट पर है और यहां पर साइड में एयर कंडीशनिंग भी है।

यह एक दुकान का एक स्टोर करने वाला जगह दिखाई दे रहा है यहां पर ढेर सारा सेफ है।

और इस शेल्फ के ऊपर ढेर सारे सामान को रखा गया है और--

और अंदर पे स्कूल है उसके बाद में साइड साइड पर पौधा भी पेड़ पौधा भी लगाया गया हैं।

यहां पर आदमी बैठे हुए हैं छाया के नीचे और यहां पर लाइट्स भी लगे हुए हैं।

हमें इस तस्वीर पर एक अ लोगों दिखाया गया एक पोस्टर दिखाया गया है जहां पर लिखा है स्वीट होम गर्ल्स पी_जी इ_एस_एस सेक्टर ईटानागर ।

इसके बाद में इस रास्ते के थोड़े ही आगे पर एक गाड़ी भी है।

यहां पे एक रास्ता दिखाया गया है जहां से आदमी लोग आना जाना पड़ता है।